बहोत सारे बिजली के केबल दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक फ्लावर बास्केट दिख रहा है।

बहुत सी कुर्सियां लगी हुई है।

इसमें बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है।

एम_जी ज्वेलर्स भी दिखाई दे रहा है।

इस पे प्लस का निशान लगा है।

इस पे पीपल्स हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

इसमें बहुत बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं।

कुछ लाइट के खंबे दिख रहे हैं।

बहुत सारी फाइलें लगी हुई है।

और बहुत बड़ी-बड़ी लाइटें लगी हुई हैं।

इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी है।

बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं।

बहुत से पंखे लगे हुए दिख रहे हैं।

जो गाड़ी रिपेयर कर रहा है।

बहुत सी बाइक की गाड़ी भी दिख रही है।

इसमें बड़ा पार्क बना हुआ है।

आसपास बहुत ज्यादा डेकोरेट बना है।

जिसमें कुछ क्लॉक लगी हुई है।

कुछ स्टूल भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमे दो पक्षी के स्टैचू बने हुए हैं।

बहुत सी जाय नमाजें बिछी हुई हैं।

कैलेंडर भी टंगा हुआ दिख रहा है।

इसमें कुछ दुकानें दिख रही हैं।

ढाबे का नाम बालवीर द पंजाबी ढाबा है।

इसमें एक बहुत बड़ी बैंक दिखाई दे रही है।

चट्टानों के अंदर कुछ गुफा टाइप की बनी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ टेबल कुर्सी दिखाई दे रही है।

जिसके आसपास कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं।

जिसके आसपास बड़े-बड़े पेड़-पौधे और बहुत सी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं।

इसमें बहुत से ऑटो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

जिसके अंदर बहुत बड़े-बड़े पत्ते कमल के फूल दिख रहे हैं।

लकड़ियों की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।